इसके शीशे में एक टावर नज़र आ रहा है।

कुछ बच्चे नृत्य सिख रहे हैं।

प्रोग्राम आयोजित किये जाते है।

साफ़-सुथरा करने व चमकाने के लिए --